जैसा की आप यहाँ देख सकते हैं बहोत सुंदर सा तालाब है कुछ पेड़-पौधे से है जो की बहोत सुंदर सा व्यू दिख रहा है कुछ पक्षी दिख रहे हैं यहाँ।

जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं कि हमें यहाँ जिम जैसा शो हो रहा है यहाँ कुछ मशीनें रखीं हुई हैं जिम के एक्सरसाइज के लिए।

औरते खड़ी हुईं हैं चीज़े खरीदने के लिए शॉप्स में बहुत सारी चीज़े हैं बहुत सारी चीज़े है लाइक पोनीटेल हेयरबैंड --

जैसा की आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ एक बड़ा सा हॉल दिख रहा है यहाँ बहुत सारी चेयर् दिख रही हैं।

यहाँ पे हम देख सकते हैं बहोत बड़ा मंदिर दिख रहा है जो की बहोत सुन्दर हैं और बहोत कलरफुल है।

यहाँ हमे एक आदमी दिख रहा हैजो की सब्जियाँ बेचने वाला है।